--है बाजु में एक बाइके खड़ी है बाजु में भी दुकान है पंखा

इस चित्र में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के किनारे कुछ बच्चें खेल रहे है रोड के उस साइड एक सोसाइटी है जहाँ पे बोहोत बड़ी- बड़ी बिल्डिंग है उनके कपड़े टंगे हुए है क्रीम और पिक का बेबी पिंक कलर की बिल्डिं --

ये घर का कलर गुलाबी और पिंक है शटर लगी वहां पर भी दुकाने है।

एक सीढ़ी है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ऊपर पंखा लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है एक टेबल रखा है जो ब्लैक कलर का टेबल है ये ऊपर साइड भी बुके रखी है अलग-अलग --

चित्र में हमें दो लोग दिखाई दे रहे जो की एक घर के बाहर खड़े हुए पोस्टर लगे हुए रेड कलर नीचे टूल लगी हुई है ब्लैक कलर की फर्श है।